और अंदर कुछ गाड़ियां भी है और ऊपर लाइट जल रही है।

इस दृश्य में दुकान दिखाई दे रही है जिसमें टमाटर गोभी और कुछ फ्रूट भी है।

और स्टेज भी बना हुआ है।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

और इसके अंदर छोटे से लेकर बड़ी साइज तक की साइकल है।

जिसका नाम संटेवीटा हॉस्पिटल है।

और बहोत सारे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं।

जिसमें बहुत सारे बॉल्स भी है।

इस दृश्य में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और एक बोरा भी दिखाई दे रहा।

और पीछे बहुत सारे दुकाने भी दिखाई दे रही है।

जिसके बाहर काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

और पोस्टर्स भी लगी हुई है।

और चर्च का कलर येलो और वाइट में है।

और आसमान नीले कलर का है और धूप खिल रही है।

इसमें काफी सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

इसमें दो औरतें अपने सर पर टोकरी रखकर लेकर जा रही है।

और गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

और खिड़कियां भी दिखाई दे रही है और बाहर कुछ कपड़े खाटे हुए हैं।

कुछ झूले और स्लाइड्स लगे हुए हैं।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

इस दृश्य में बहोत सारी मूर्तियां दिखाई दे रही है।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

और कुछ गाड़िया भी दिखाई दे रही है।

और पौधे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि गमलों में लगे हुए हैं।

इनमे लाइटे जल रही है।